इस केक का कलर चॉकलेटी है।

ऊपर में बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए हैं।

बेड पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे घासे भी नीचे में है।

इसमें से एक मोटर रखा हुआ है एक लाइट भी रखा हुआ है।

इस पे कुछ लिखा हुआ है नो वर्क करके।

एक गाड़ी में एक लगा हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक करके कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे ऊपर में बहुत सारे गाड़ियों का लोगो लगा हुआ है।

इस घर का कलर सफेद है।

यहां कुछ छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारो में सफेद कलर का साड़ी पहन रखा है।

इसका कलर सफेद और लाल है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पे एक लोहे का ब्रेंच भी है।

नीचे में पीला और काला रंग का मैट बिछा हुआ है।

यहां बहुत सारे बड़े बड़े पौधे भी हैं।

सभी चेयर में और टेबल में वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है उसने ग्रीन कलर का जैकेट पहन रखा है।

गाड़ी को हवा में उठा दिया गया है।

यहां पे नीचे में बहुत सारी पीले कलर का बॉक्स भी रखा हुआ है।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।